इस पिक्चर में एक घर टाइप दिख रहा है।

और दीवार पे एक पोस्टर लगा है और बाहर एक --

जहां दो आदमी खड़े हैं और दो इलेक्ट्रिक ऑटो भी खड़े हैं।